लगाया गया है और यहां--

यहां पर सामने एक बैंक हैं।

यहां पर सामने एक पेट स्टोर है।

यहां पर सामने कुछ मूर्तियां रखी गई हैं।